यहाँ पर सारे लोग मतलब खूब खाना खाने के लिए ही आते हैं।

यहाँ पे कुछ लोग ऑटो वाले से बात कर रहे हैं। एक रिक्शा वाला जा रहा है एक बाइक वाला यहाँं पे बैठा हुआ है औ ये एक मंदिल सा दिख रहा है।

कोई एक संस्थान है जिसके आगे कुछ महिलाये --

यहाँ पर बोहोत ही भीड़ है कुछ लोग यहाँ पे डांस करते हुए नजर आ रहे हैं और यहां पे बोहोत ही मस्ती हो रही है फूल एवं लड़ियो के साथ।